यह एक पैलेस है यह पैलेस में बहुत सारे आदमी रहने के लिए पैलेस में आते है पैलेस को बुक किया जाता है यह पैलेस में रहने खाने की --

इस गाड़ी में तीन से चार आदमी तक बैठते है। यह गाड़ी बहुत ही अच्छी है।

यह एक ऑफिस है यह ऑफिस में बहुत सारे लोग यहाँ पे वर्कर काम करते हैं बहुत सारे आदमी यहाँ पे आए हुए हैं यह ऑफिस के बाहर एक आदमी खड़ा है यह आदमी ऑफिस में ब्लैक बोर्ड चेक कर रहा है ।